दोपहर का ये वीडियो काफी अच्छी तरह से खींचा गया है।

इस फोटो में दिखाई ले दे रहे है कि ये किसी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने की फोटो है और--

झूले व्येगैरा तो लगभग दिख नहीं रहे हैं एक दो दिख रहे हैं और लोग बैठ के अपने दिन को इंजॉय कर रहे--

इस पिक्चर में देख रहा हूं कि सामने पहाड़ वगैरह तो दिख रहे हैं हल्के से और भीड़ भी काफी दिख रही है।

पब्लिक इस प्लेस को एंजॉय कर रही देखकर जो सामने हो रहा है और देख के काफी पब्लिक एंजॉय कर रही है पिक्चर काफी क्लेरिटी से खींची--

इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि ये किसी गार्डन की पिक्चर है और सामने खंभा वगैरा भी लगा है।

फूलों के प्लांट वगैरह पौधे वगैरह भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी अच्छे से।

बारिश के टाइम का जो फोटो लग रहा है पिक्चर इतनी खास क्लैरिटी नहीं है पर--

छत की वीडियो है जहां पे छत के लेंटर का काम चल रहा है।

दिख रहा है कि जो मतलब सजावट वगैरह है वह काफी अच्छे से की गई है और देखने में पिक्चर कुछ काफी अच्छी तरह से मतलब--

और इस पिक्चर में मतलब दो तीन ऑटो वैगरह भी दिख रहे हैं रिक्शावाले।

अं साइकिलिंग की शॉप है ये जो पिक्चर में एक व्यक्ति भी खड़ा--